यहाँ पर अ फ्रूट्स की दुकान लगी हुई हैं। अ यहाँ पर मार्किट है जोकि फ्रूट्स की दुकान लगी हुई हैं। बोहत सारे यहाँ पर सभी प्रकार के फूड्स रखे हुए हैं।

अं जिसपे से बच्च औ ये स्लाइड राउंड शेप में स्लाइड दी है। एक पानी का पाइप पड़ा हुआ है जोकि पेड़ों में पानी देने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँं पर।

और जो केक वो तीन अ येल्लो और अ ज ब्लू कलर का है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और बहुत सारे बलूंस हैं अ बलूंस से डेकोरेट किया गया है।

जिसे फूलों से बोहत अच्छे से फूलों से सजाया गया है जिनमें तीन चार कलर के फूलों से सजाया गया है केले की पत्तियाँ ली गयी हैं केले की पत्तियों से पेड़ के द्वारा सजाया गया है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अ जो की अब --

और इसमें एक कार है वो आधी-आधी डूबी हुई है पानी में एक बस खड़ी हुई है ब्लू कलर की और एक लेडिज आ रही है और उनके आधे-आधे पैर पानी में डूब रहे हैं।

यहाँ पर एक स्टेशन है और जोकि यहाँ ऊपर जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ हैं बड़ा ब्रिज बना हुआ है जिस पर च जाने के लिए बहुत सारी स्टेयर लगी हुई हैं और सीढ़ी लगी हुई हैं।

यहां पर एक कॉलोनी बनी हुई कॉलोनी बनी हुई है और कॉलोनी में यहां से रास्ता घरों के सामने से रास्ता दिया हुआ है।

अ यहाँं पर कुछ पिलर टाइप के बने हुए हैं और जो गन्ने के द्वारा फलो रख के गन्ने रख के पूजा करी जा रही है यहाँ पर।